काउंटर के साइड में एक टेबल पड़ा है और सामने एक चेयर पड़ी है।

सामने एक रूम है रूम के अंदर--

सफेद रंग की पेंट और सफेद रंग का कोट पहेना है लड़कों ने अलग अलग तरह के कपड़े पहने हैं।

एक आदमी हाथ में फूल लिए खड़ा है।

ऑफिस है जिसके ऊपर एक बैनर लगा है जिसके ऊपर लिखा है।

जिनके पीछे और भी काफी बस है जो कि सफेद और अलग-अलग रंग की हैं।

खड़ा है जिसने मैरून कलर की शर्ट और--

एक येलो कलर का है इसके सामने--

सफेद कलर का है और कॉफी का है।

कूड़ादान पड़ा है सोफे के ऊपर व्हाइट कलर के कवर है।

साइडो पर बड़े बड़े बूटे पड़े हैं।

खाली जगह दिखाई दे रही है।

इसके पीछे काफी हरे भरे पेड़ पौधे हैं अंदर एक बाइक खड़ा है।

काफी लोग खरीद रहे हैं जिनमें--